उसके हाथ में झोला है पीठ में बैग है एक आदमी चल रहा है एक आदमी रुका हुआ है फिर पिछला आदमी भी चला रहा है पीछे गाछ है नीला आसमान है वाईट कलर का भी आसमान है एक आदमी खिड़की से हुलक के देख रहा है।

यह बोर्ड बड़ा युनिवर्सिटी टाइप का है गोल्डन एन्ड वाइट कलर किया हुआ है नीचे ईटा का सीलिंग किया हुआ है उ कलौड है ऊपर में ये येल्लो स्काय है वाइट कलर है।